तस्वीर का अनुसार यख मा जी एक लड़का छ दिखेण लग्युं यख मा जी यू लड़का एक फंवारा नीसाण छ बैठ्युं।

यखम कई और लोग छन दिखेण लग्यां यख मा जी लोग अपणी बॉडी बनौण औंदन। दीवाल पे उच्च तस्वीर छा लगीं यख मा जी सिसा भी छ लग्युं।

यख मा जी लाइट छन जगण लगीं यख मा जी बैंक मा जी रुपया जमा कन ओन्दा छन समय पर अपड़ु रुपया नीकाल ओन्दा छन यखम एक पोस्टर छा पिछाड़ी मा जी एक दिखेणु।

चित्र का अनुसार यख मा जी जू छा एक लड़का छ दिखेण लग्युं यख मा जी येकि दाढ़ी छन बाल छन यख मा जी जो छ यू ये अपरा बाल छन कटोण लग्युं। यख मा जी नाईं वाला की दुकाना फंडे मा जी एक और लड़का छ उ भी अपड़ा बाल छन कटोण लग्युं।

तस्वीर का अनुसार यख मा जी जू छा एक कमरा छा यू कमरा देखण मा जी नाईं वाली दुकान छ की लगण लगीं।

तस्वीर का अनुसार यख मा जी एक छा लड़का दिखेण लग्युं यख मा जी ये लड़का न अपरा गला पर एक हैडफ़ोन कर छ लग्युं।

तस्वीर का अनुसार यख मा जी एक बुढया और एक बुड्ढी च दिखेण लगीं। यख मा जी दीवाल छा दीवाल मा जी कुछ पोस्टर कट छन लग्यां एकम भारतीय स्टेट बैंक का पोस्टर कट छन लग्यां।